इस इमेज में मुझे एक मंदिर दिखाई दे रहा हैं मंदिर के सामने गेट लगा हुआ दिखाई दे रहा हैं।

गुलाब टांगे हुए दिखाई दे रहें हैं अदमी दिखाई दे रहें हैं।